वेन्यू है| शादी का माहौल है| शादी का घर है| पूरा सजा हुआ है| डेकोरेशन अच्छा है।

अच्छा है समर वेकेशन में हम लोग जा सकते है यहाँ बहुत ही मस्ती कर सकते है पानी की दिख रहा है परिवार फॅमिली के साथ जाने में अच्छा लग रहा है।

मोड़ है बना हुआ स्टेज है प्रोग्राम है बस दूल्हा-दुल्हन का आना बाकि है यहाँ पे पता नहीं बट स्टेज बहुत अच्छा बनाया गया है और क्या बोलू ज्यादा मै इसके बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती हु आदमी कुछ है ही नहीं तो बोलू क्या मै।

--है कुछ जगह का रास्ता सरसती माँ का फोटो बना हुआ है धुप है नाइल का वृक्ष दिख रहा है यहाँ पे लोग झंडा भी फहराते है क्युकी वहां से चबूतरा दिख रहा है झंडा हमको अच्छा जगह है ये देखने के लिए---

यहाँ--बड़ा सा भवन में लोग तो बैठे नहीं है चेयर खाली ही है पूरा दिख रहा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है शायद पर लोग यहाँ नहीं दिख रहे है क्या बात है भाई लोग भी रहना चाहिए।